इस दुकान के अंदर चार कुर्सी रखी हुई--

इसे यहां बेचने के लिए रखा गया है।

यहां पर अलग अलग प्रकार के सोफे मिलते हैं।

यहां पर लकड़ी के सभी फर्नीचर मिलते हैं।

मुझे यहां अस्पताल का एक जनरल वार्ड रूम दिखाई दे रहा है।

पिंक कलर का है और एक पीले रंग का है।

फिश मार्केट दिखाई दे रहीं हैं।

मुझे यहां पर एक पशु चिकित्सालय दिख रहा है।

मुझे यहां पर बहोत सारे घर दिखाई दे रहे हैं।